यह एक चौराहे का सीन है जिसमें सामने की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ है जिस--

वहीं पास में तीन औरतें जो की नदी में घुस रही हैं और एक आदमी जो की पत्थर पर बैठा हुआ है।